वहा पे कोई नहीं दिख रहा है सिर्फ पेड़ पौधे ही उस घास का रंग हरा हैनीचे मिट्टी ही मिट्टी ही दिख रही है पत्थर भी पड़े हुए है वहा पे।

मकान है जो लाइट्स से डेकोरेट किया गया है वहां कुछ लोग खड़े हुए है जिसके एक बच्चा देख रहा है सामने से दो दुल्हनों का सेट बनाया गया है।

रेस बनाया गया है उसके चारो और बहुत अच्छा ग्राउंड हैं और वहां पर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो बात कर रहे और वहा ए.सी. भी लगी हुई हैं ।